एक मेला की पिक्चर है जहां पर बहुत सारे लोग मेला घूम रहे हैं पीछे बहुत बड़ी-बड़ी झूलायें लगी हुई है जिसमें बहुत सारी लाइट भी लगी हुई है।

एक पिक्चर है जो कि बहुत बड़ी बिल्डिंग भी है जहां पे बड़ा-सा पोस्टर लगा हुआ है एक आदमी का और वहां पटना लिखा हुआ है कुछ लोग है जो कि बहुत बड़ी-बड़ी बांस लगी हुई है बिल्डिंग के ऊपर कुछ आदमी वहां काम कर रहे है।

ये देख सकते हैं जिम की तस्वीर है जहां की एक आ मोटा-सा आदमी है जो की मशीन इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहा है| जिम करते हुए एक लड़का है जहां पार हो रहा है |